यह दृश्य हमें किसी कमरे का नजर आ रहा है।

फूलों से सजा हुआ पेट्रोल पंप --

यह दृश्य हमें किसी बाग का नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें बहोत सारे पेड़ और झाड़ियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

यह दृश्य हमें किसी डांस इंस्टिट्यूट का नजर आ रहा है।

बहोत सारे पेड़ लगे हुए नजर--

गार्डन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

पीछे एक बहोत बड़ी तस्वीर लगी हुई नजर आ रही है।

यह दृश्य हमें किसी हॉस्पिटल के कमरे का नजर--

मंदिर के बाहर सीढ़ियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां पर हमें फंक्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य हमें किसी शॉपिंग मॉल का नजर आ रहा है।

बहोत सारे लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

दृश्य में हमें बोहोत सारे पौधे और फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक समंदर नजर आ रहा है।

पार्क में एक सायकल पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

दृश्य में हमें एक गिफ्ट हाउस नजर आ रहा है।